यहाँ पे शादी का फ़ंक्शनस चल रहा है। स्टेज बनाए गए हैं। स्टेज पे एक वरमाला के लिए सोफ़ा रखे गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूलों से --

यहाँ पे गाड़ी को बनवाने के लिए लाए जाते हैं। यहाँ पे बहोत सारे आदमी भी अपने-अपने गाड़ी को ठीक कराने के लिए लाए गए हैं।

ट्रेन खड़ी है। यह ट्रेन में कोयला की ट्रेन है। इसमें माल लदाए जाते हैं। यह ट्रेन --